अ पे सामने एक तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर एक दुकान की तस्वीर है। इस दुकान मे हम बहुत सारी चीजे की पैकेट देख रहे हैं लटके हुए।

हम अपने सामने जो तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में देख रहे हैं कि सामने पानी है। पानी के ऊपर बोहोत सारी काई जमी हुई है। पीछे हम बिल्डिंग देख रहे हैं।

न्यू शेप और एक फोटो बना हुआ है लैस का। नीचे बहुत सारे पैकेट टाँगे हुए हैं खाने की चीजों की।

नीचे ग्रिल दिया गया है। यह बिल्डिंग काफी ऊँची है। सामने हल्की हल्की पेड़ की पत्तियाँ दिख रही हैं।

रेलिंग देख रहे हैं। द् गेट के ऊपर में मेहैंत दिग्विजय नाथ पार्क का ये दृश्य है। गेट अभी बंद है।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

अपने सामने जो दृश्य देख रहे है यह एक रास्ते का दृश्य है। एक रोड का दृश्य है। यह रात के समय लिया गया दृश्य है जिसमे हम रोड --

पा रहे है मैदान में सूरज डूब रहा है। शाम का समय है। लड़के यहां इकट्ठे हुए हैं खेलने के लिए जो खेल रहे हैं मैदान में।